सामने बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है और ट्रैक्टर पर ड्राइवर कोई नहीं है बहुत ही बड़ा डंपर है।

एक फर्नीचर का दुकान है यहां पे फेविकोल पेंट यही सब रखा हुआ है।

इस चित्र में एक आदमी है जो कुछ काम कर रहा है।

ये सरकारी स्कूल के बच्चे लोग हैं और देखिए बहोत ही पुराना सरकारी स्कूल है सामने हराभरा बहुत सारा पेड़ है।

है की खा जाएगा इतनी बड़ी शरीर है। बहुत ही आंख से हैवी दिख रहा--

हाथ में एक झोला रखा हुआ है उधर एक बहुत ही बड़ा पोस्टर लगा हुआ है।

इधर बहुत ही पेड़ सूखा सूखा है।

गोले गोले घेरा मारा हुआ है सभी लाल रंग की फुल फुलाई हुई हैं।

यहां ए एक बहोत ही बड़ा मंदिर है जिसके अगल बगल में बहोत ही सुंदर सुंदर सा लाइट जल रहा है।

यहां पे कुछ पोस्टर टांगे हुए हैं उधर कुछ लिपसेट का पेड़ है।

सामने कुछ पोस्टर लगाए हुए हैं उसमें लिखा हुआ है विशाखा डेयरी यहां पे अच्छे अच्छे से मिल रही है।

सामने बहुत ही हरा भरा बहुत ही सुंदर जगह है बहुत सी हरा भरा पेड़ पौधे हैं।

एक आदमी एक डंटा ले के उसमें कुछ कर रहा है एक उधर सीकड़ पकड़ा हुआ है जो सीकड़ रस्सी में बांधा हुआ है।

यहां पे छोटे-छोटे बहुत सारा पेड़ है यहां पे सीढ़ी भी है।

पे का ऑप्शन दिख रहा है नीचे कुछ डबे रखे हुए हैं।